टोई टाइम का चित्र बनाया हुआ है ये मशीन बहोत बड़ी है।

लकड़ी का बना हुआ है और उसके सामने स्टील की रेलिंग भी लगाई हुई है ऊपर एक--

यह फोटो किसी पब्लिक का पार्क की है जिसमें योगा के लिए भी स्टील के कुछ यंत्र बनाए हुए हैं और --

फ्रिज रखा है और यह काउंटर पर कुछ भुजिए की थैली पड़ी है और दो गैस की टंकी है इंग्लैंड गैस की।

यह फोटो किसी चर्च की है जहां पर कोई प्रतियोगिता हो रही है और एक व्यक्ति भाषण दे रहा है दूसरा म्यूजिक बजा रहा है सामने चर्च का --

कुछ लोग खड़े हैं और नीचे हरे कलर में--

यह फोटो एक शोरूम की है जिसका नाम है कुसुम--

इसके सामने एक वॉटर म बनने के लिए एक खूबसूरत डिजाइन में बनाया गया है।

और अंदर कुछ लोग भी खड़े हैं और बाहर की साइड एक छोटा गेट भी बनाया गया है जो किसी बाथरूम का लग रहा है।

यह एक स्कूल का दृश्य है जिसमें कुछ बच्चे हैं एक टेंट के नीचे बैठे हुए हैं कुर्सियां लगा कर और एक मैदान में एक झंडी जो --

बच्चे कोई खेल की तैयारी करने आए हुए है और पास में ही बहोत सारे पेड़ लगे हुए है लिंब के --

फेर वाली दुकान हैं और पास में एक गेट है जो किसी घर में जा रहा हैं बाहर एक बाइक खड़ी हैं।

और कुछ सीढ़ियां लगी है जिसका कलर है ब्लैक ।

जो लगभग पांच चार मंजिला लग रहा है बहोत सारे लोग इस पर इसमें घूमने आए हुए हैं।